इसमें बाइक बिकता है लगता हैं कि यहां पे कुछ इनॉग्रेशन वगैरा हो रहा है.

यह एक तरह का फोल दिख रहा है जिसमे पानी आ रही है.

बहुत सुंदर सा ये माहौल है और बहुत सारे यहां पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो बहुत अच्छी खूबसूरती से लग रहे हैं.

और एक लहंगा और कपड़े का दुकान है जो कि ऑन रोड में दिख रहा है.

यह एक झील दिख रहा है.

जो चारो तरफ़ से बॉउंड्री भी किया हुआ है.

यह एक सलून है.

बोहोत सारे यहाँ पे पत्थर हे छोटे छोटे पत्थर बड़े बड़े पत्थर भी हे और सामने पेड़ पौधा दिख रहा हे और एक आदमी सामने मे कुछ डंडा लेके खड़ा हे.

और कुछ लोग कुछ कार्य भी कर रहे हैं रस्सी बाँध रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए भी हैं.

और भी लोग चढ़ रहे हैं उस बस पे सब--

लड़का का चलके जा रहा है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी यहां लगे हुए हैं और सामने एक ब्लोअर दिख रहा है.

और अंदर काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है.

बहुत सारे टू व्हीलर्स लगे हुए हैं गैरेज में गाड़ी बनाने का काम होता है बहुत सारे लोग खरे हैं.

मस्जिद में बहुत सारे लोग कुरान पढ़ रहे है और दो पिलर भी नजर आ रहा है सामने--

दो गिलास भी रखी हुई है एक बोटल है और दो नमक की बाटली भी रखी हुई है.